और कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक रास्ता दिखाई दे रहा --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

एक्सरसाइज करता नजर आ रहा है।

और बहोत ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने दुकानें दिखाई दे रही है जहां पर सामान रखा हुआ --

इस इमेज में यहां पर ऑफिस दिखाई दे रहा --

और बादल भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मंदिर दिखाई दे रहा है सामने भगवान की मूर्ति भी है और लाइटें जलती नजर आ र --

और लाइटें भी जलती दिखाई दे रही --

यहां पर एक लड़का भी दिखाई दे रहा--

और सामने घास खाती हुई नजर आ रही है।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

इस इमेज में यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर कुर्सियां लगी हुई--

दिखता नजर आ रहा --

इस इमेज मे यहां पर दुकाने बनी हुई --

और शटर भी बंद दिखाई दे रहा है।

बड़ा सा बैनर भी नजर आ रहा है।

इस इमेज मे सामने एक पार्क दिखाई दे रहा --

जहां पर स्कूल के बच्चे हैं यहां पर झूले भी नजर आ --

भीड़ नजर आ रही है।